के अंदर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और --

बिल्डिंग के अंदर काफी कमरे बनाये गए है और बिल्डिंग के --

समारोह स्थल के अंदर अनेक बड़ी-बड़ी लाइटे लगा रखी और समारोह स्थल के अंदर काफी --

यह दृश्य एक मार्केट का है और यह एक --

यह दृश्य एक बड़े से हॉल का है ।

मेट बिछा रखी है और उसके साइड में --

येह दृश्य एक दुकान के अंदर का हैं।

कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और एक मिस्त्री --

स्कूल की डोलियों पर --

तरकारी की गई है उसमे एक भारतीय झंडा है राष्ट्रिय पक्षी है और अनेक चीजे बना रखी है।